एक टेबल लगी हुई है। टेबल पर बोहोत सारा खाने का सामान दिखाई दे रहा है। पीछे भी लकड़ी की टेबलें दिखाई दे रही हैं।

कुछ लड़कियां भी दिखाई दे रही है जो टेबल के आगे --

आदमी ने ब्लू कलर की टी-शर्ट पहनी हुई है।

ऊपर हैंडीबैग लिखा हुआ है दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक रूम दिखाई दे रहा है। रूम में एक बड़ी सी दीवार बनी हुई दिखाई दे रही है।

पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर डीएसपी सोडा कॉफी शॉप लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

सामने एक ये और एक गोल्डन कलर की गाड़ी भी दिखाई दे रही है।

पास ही में दो कुर्सियाँ भी रखी दिखाई दे रही हैं। कुर्सी का कलर काला है।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

आदमी के आगे कांच रखे हुए दिखाई दे रहा है। एक बोतल दिखाई दे रही है।

बर्ज़िला महिला चिकित्सालय लिखा हुआ है। पास ही मे एक मेडिकल भी दिखाई दे रहा है।

माता जी की तस्वीर के आगे दो महिलाएं बैठी हुई दिखाई दे रही है।

सभी लोगों को ने यहाँ पर मुँह पर मार्क्स लगाया हुआ है।

दीवार का रंग सफेद दिखाई दे रहा है।